पूजा का सीन लग रहा है मुझे यह जो नदी हैं नदी में से बहुत सारे लोग जो की --

यहाँ पे पवित्र नदी है जहां पे बहुत सारे लोग आते जाते है जहाँ पे--

आरती दिखाते हैं और सूर्य देव को प्रणाम करते देखिए अपनी--

जोकि यात्रा को प्रारंभ करते है यहाँ पे देख सकते है बोहोत ही भीड़ लगी हुई है यहाँ --

कुछ फेरी वाले लगे हुए है जहाँ पे बोहोत सरे लोग आ जा रहे है वहाँ पे --

कैमरा मैन ने इस साइड से तफिस तस्वीर को ली गई है जो कि बहोत ही --

अच्छे फोटोग्राफर भी नहीं हैं हम देख सकते हैं भीड़ के कारण अच्छा नहीं लग रहा हैं।

ग्रीन लाइट और भी बहुत सारी लाइटें लगाई गई लेकिन फिल्हाल अभी घर का दरवाजा बंद हैं।

पेड़ दिखाई दे मुझे कोई यहाँ पर गांव की एंट्री जो होती है वह लग रही यहाँ पे सड़क में जो कि अंदर आते हुए दिख रहे वहाँ पे--

नहीं देखने से मुझे कोई ऐसा रिश्ता लग रहा है जहां पर सभी लोग काम करने के लिए आते हैं।

तभिन तभी घर का मालिक और ठेकादार हैं वो भी आगे वो भी साथ ही मे यहाँ पे काम करने वाला लेकिन--

पेड़ो और घरों का ये ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे घर जो भी छोटा सा बनाया गया हैं लेकिन बहुत ही सुंदर घर बनाया गया है।

ये कौन छुपा के रखा हुआ है लगता है क्वॉरेंटाइन है यहाँ पर नज़ारा --

ये देखने मुझे होटल कोई सीन लग रहा है आप देख सकते है रिसेप्शन के पास एक--

बड़ा सा टेबल लगाया गया है जो की बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे --

चार पांच छः लोग जो मिलकर इन सब को यहाँ पर घूमने के लिए लाए गए हैं और इन सबको सीखना चाहते है की कैसे क्या होता है आप देख सकते है नदी के ऊपर जो की --

यह देखने से कोई बड़ा घर लग रहा है मुझे कोई घर जो कि बहोत ही बड़ा बनाया गया है घर के सामने जो कि --

यह देखने से मुझे कोई चर्च यहाँ पे लग रहा है अब देखते है चर्च बहुत ही छोटा और बहुत ही कम --

लगता है यह बॉक्स है अपना धंधा काम करते होंगे यहाँ पर देख सकते हैं सामने दे वाला मे--

पौल्टी भी रखी है पौल्टी मतलब चिकन भी रखे है आप देख सकते है चिकन भी यहाँ पर कितना सारे यहाँ पर रखे हुए हैं।

अच्छी जगह है यह घूमने के लिए आप देख सकते है चारो ओर पानी और चट्टानों से भरी हुई है जो अच्छा मजा आ रहा है जो देखने में --

ये देखने से कोई नदी लग रहा है यहाँ पे आप देख सकते है नदी के ऊपर एक ब्रिज भी बनाया गया है जोकि काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे यहाँ पे नदी के चारों ओर हरे-भरे पेड़ भी नजर आ रहै हैं।

कपड़े को जो इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है हम देख सकते है एक घर के --

यहाँ पे केंद्रीय सहायता सब केंद्रीय सहायता यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सामने की ओर बंदा लड़का भी बैठा होगा एक जो की यहाँ पे --